माइक में कुछ लोग बोल बोलेंगे ये माइक रख लखा है इसके आगे पारटा रखा हुआ है इधर गेट लगा हुआ है वो उस पर घड़ी है इधर एक लगी हुई है।

ऊपर इसके खींप लगी हुई है खींप से छत बनाया हुआ है इधर पास में इनके झोड़ा है पानी-पानी पड़ा है इधर एक पौधा लगा है इसके आगे कुंड बना हुआ है।

ऐन इसके बाहर कार खड़ी है। इसके जो पत्थरे है वो ग्रेनाइट के बने हुए है।

इसमें बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और दो गाड़ियां खड़ी हैं यहां पर एक बड़ा सा गेट है इधर बिल्डिंग है।

यह बहुत ही बड़ा पेड़ है इसके पेड़ के ऊपर तीन लड़के बैठे हैं नीचे दो बोतलें पड़ी हैं ड्यू की इधर एक --

आदमी है जो बस के साथ फोटो लिए--

यह एक मोबाइल की शॉप इसमें हमें बल्टूथ दिख री दिख रही है और इसमें हमें एक चार्जर लगा हुआ दिख रहा है और --

लाइटे जल रही हैं नीचे कुछ टाइले लगी हुई है और न्न् ऊपर विद्युत के खंभे लगे हैं और चेयर दिखाई दे रही हैं।

ये है एक शॉप इसमें लैपटॉप है जो टेबल पर रखा हुआ है और इसके नीचे दो --

गर्मियों में पहनने वाले कपड़े भी हैं सर्दियों में पहनने वाले कपड़े भी हैं अलग अलग प्रकार के लावर्टी शर्ट ये सब कपड़े मिलते हैं यहां पर।

बालों में हवा मारने वाली मशीन लगी है पास में कपड़ा पड़ा है और आगे बड़ा सा शीशा लगा हुआ है नीचे डस्टबिन पड़ा है।

इसमें बहुत सारे पौधे लगे हुए है गमलो मे पौधे लगे हुए हैं और बड़े बड़े पेड़ भी है और सारे प्रकार के फल भी फलों वाले पौधे लगे हुए हैं।

पौधे लगे हुए हैं छोटे छोटे है एकदम हरियाली बहुत ही सुंदर है।